openfoam उपयोग करके simulating flow in a lid driven cavity पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में मैं आपको दिखाऊँगी
lid driven cavity file संरचना
geometry mesh करना
paraview में हल करना और postprocessing परिणाम
spreadsheet पर प्लॉट और परिणामों को प्रमाणित करना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ: linux operating system ubuntu version 1004
openfoam version 210 और paraview version 3120
lid driven cavity एक cfd code के प्रमाणीकरण का बहुत अधिक उपयोग होने वाला 2d टेस्ट केस है
यह lid driven cavity का चित्र है
boundary conditions समान ही हैं
एक गतिमान वॉल और this स्थिर वॉल्स
हम इसे reynolds no re = 100 के लिए हल करेंगे
गतिमान वॉल की गति 1 मीटर प्रति सेकंड है
lid driven cavity के लिए पाथ वही है जो संस्थापन के ट्यूटोरियल में था
अब एक कमांड टर्मिनल खोलते हैं
यह करने के लिए अपने कीबोर्ड पर एक साथ ctrl+alt+t कीज़ दबाएं
कमांड टर्मिनल पर lid driven cavity के लिए पाथ टाइप करें
और टाइप करें run और एंटर दबाएं
cd space tutorials और एंटर दबाएं
cdspaceincompressible और एंटर दबाएं
cdspace icofoamध्यान दें यहाँ f बड़े अक्षर में है और एंटर दबाएं
cdspace cavity और एंटर दबाएं
अबटाइप करें ls और एंटर दबाएं
cavity के फाइल संरचना में आप तीन फ़ोल्डर्स देखेंगे: 0 constant और system
अब टाइप करें cd space constant और एंटर दबाएं
अब टाइप करें ls और एंटर दबाएं
constant फोल्डर polymesh नामक एक अन्य फोल्डर और फ्लूइड के भौतिक गुणों का वर्णन करने वाली एक फाइल रखता है
अब टाइप करें cd space polymesh और एंटर दबाएं
polymesh blockmeshdict नामक एक फाइल रखता है
अब टाइप करें ls और एंटर दबाएं
आप blockmeshdict देख सकते हैं
blockmeshdict फाइल को खोलने के लिए टाइप करें gedit space blockmeshdict
यह blockmeshdict फाइल खोलेगा
अब इसे कैप्चर एरिया में लाएं
यह lid driven cavity के लिए निर्देशांक है
blocking और meshing parameters
और boundary patches रखता है
चूँकि कोई भी arcs साथ ही patches मर्ज करने के लिए नहीं हैं edges और mergepatchpairs को खाली रखा जा सकता है
अब इसे बंद करें
कमांड टर्मिनल में टाइप करें: cd space dot dot और एंटर दबाएं
इसे दो बार करें आप cavity फोल्डर में वापस आएंगे
अब टाइप करें cd space system और एंटर दबाएं
अब टाइप करें ls एंटर दबाएं यह तीन फाइल्स रखता है
controldict fvschemes और fvsolutions
controldict शुरू/ और अंत के लिए control parameters रखता है
fvsolution run time में उपयोग हुई discritization schemes रखता है
और fvschemes solvers tolerance आदि के लिए समीकरण रखता है
अब दोबारा टाइप करें cd space dot dot और एंटर दबाएं
अब टाइप करें cd space 0 ज़ीरो और एंटर दबाएं
अब टाइप करें ls और एंटर दबाएं
यह boundary conditions जैसे pressure velocity temperature आदि के लिए शुरूआती वैल्यूज़ रखता है
अब cavity फोल्डर में वापस जाने के लिए टाइप करें cd space dot dot
अब हमें ज्योमेट्री मैश करनी है
यहाँ हम एक रफ़ मैश उपयोग कर रही हूँ
terminal में blockmesh टाइप करके ज्योमेट्री मैश करें
अब टाइप करें blockmeshध्यान दें यहाँ m बड़े अक्षर में है और एंटर दबाएं
मैशिंग पूरी हो गयी है
यदि blockmesh फाइल में कोई गलती आती है तो यह टर्मिनल में दिखेगी
ज्योमेट्री देखने के लिए टाइप करें parafoam ध्यान दें यहाँ f बड़े अक्षर में है और एंटर दबाएं
यह paraview window खोलेगा
object inspector मेन्यू के बायीं तरफ apply पर क्लिक करें
आप lid driven cavity ज्योमेट्री देख सकते हैं अब इसे बंद करें
टर्मिनल पर checkmesh टाइप करके मैश चेक करें
ध्यान दें यहाँ m बड़े अक्षर में है और एंटर दबाएं
आप सेल्स की संख्या skewness और कुछ अन्य पैरामीटर्स जो मैश से सम्बंधित हैं देख सकते हैं
अब मैं स्लाइड्स पर वापस आती हूँ
सॉल्वर जो हम यहाँ उपयोग कर रहे हैं वो है icofoam:
icofoam newtonian fluids के incompressible flow के लिए एक transient अस्थायी solver है
अब मैं टर्मिनल पर वापस आती हूँ
टर्मिनल पर टाइप करें icofoam
ध्यान दें यहाँ f बड़े अक्षर में है और एंटर दबाएं
रन हो रही iterations टर्मिनल विंडो में दिखेंगी
सॉल्विंग पूरी होने के बाद ज्योमेट्री और परिणामों को देखने के लिए टर्मिनल में टाइप करें parafoam
object inspector मेन्यू के बायीं तरफ
apply पर क्लिक करें अब object inspector मेन्यू में गुणों में नीचे जाएँ
आप mesh parts volume fields आदि देख सकते हैं
lid driven cavity के भिन्नभिन्न बाउंड्री क्षेत्रों को देखने के लिए mesh part में इन बॉक्सेस को चेक या अनचेक करें
इसके बाद active variable control ड्रापडाउन मेन्यू के ऊपर बायीं तरफ इसे solid color से p या कैपिटल u में बदलें जोकि initial conditions जैसे pressure velocity हैं
मैं कैपिटल u चुनूँगी यह आपको गति velocity की प्रारंभिक कंडीशन दिखायेगा
paraview विंडो में ऊपर आप vcr control देखेंगे
play बटन पर क्लिक करें
यह lid driven cavity के लिए velocity का अंतिम परिणाम है
active variable control मेन्यू पर ऊपर बायीं तरफ क्लिक करके color legend पर टॉगल करें
यह u velocity के लिए color legend है
हमें प्राप्त परिणामों को प्रमाणित करना है
यह करने के लिए u और v velocity प्लॉट करते हैं
यह करने के लिए filters पर जाकर नीचे जाएँ > data analysis > plot over line
इस पर click करें
आप x y और z एक्सीस देख सकते हैं
x और y एक्सिस को बारी बारी चुनें
मैं x axis चुनूँगी और apply पर क्लिक करुँगी
आप देख सकते हैं pressure और velocity प्लॉट्स प्लॉट होते हैं
चूँकि यह नॉनडायमेंशनल एनालिसिस है हमें reynolds number =100 के लिए u/u v/s y/l का ग्राफ प्लॉट करना है
यह करने के लिए plot data में yaxis पर क्लिक करें
और apply पर क्लिक करें
आप प्लॉट देख सकते हैं
अब मेन्यू बार में file > save data पर जाएँ
अपनी फाइल को उचित नाम दें
मैं इसे cavity now दूंगी
यह file csv dot csv file की तरह सेव होगी
अब ok पर क्लिक करें दोबारा ok पर क्लिक करें
अब openfoam directory के cavity फोल्डर पर जाते हैं
नीचे जाएँ आप cavitycsv फाइल देख सकते हैं
इसे open office या libreoffice spreadsheet में खोलें
लिबरे ऑफिस स्प्रेडशीट में u0 u velocity और दायीं तरफ points 1yaxis कॉलम्स को एक अन्य स्प्रेडशीट में कॉपी करें
अब दोनों कॉलम्स को डिवाइड करें यानि u zero को कैपिटल u से और points 1 को कैपिटल l से
और परिणामों को मेन्यू बार में ऊपर libreoffice chart विकल्प में प्लॉट करें
अब मैं स्लाइड्स पर वापस आती हूँ
प्राप्त परिणाम इस चित्र की तरफ होंगे
validate the results on a paper published on lid driven cavity by : ghia et al 1982 and results obtained from fluent ghia et al 1982 द्वारा lid driven cavity पर प्रकाशित पेपर
इस tutorial में हमने सीखा:
lid driven cavity की फाइल संरचना
lid driven cavity हल करना
परिणामों की पोस्ट प्रोसेसिंग
और प्रमाणिकता
नियत कार्य में: lid driven cavity में कुछ पैरामीटर्स बदलें
0 folder में velocity magnitude
constant फोल्डर में transport properties में kinematic viscosity
और u/u v/s y/l के परिणाम प्लॉट करें
इस url पर उपलब्ध वीडियो देखें: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
spoken tutorial project team:
स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र देती है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
अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है:
यह स्क्रिप्ट श्रुति आर्य द्वारा अनुवादित है मैं जया आपसे विदा लेती हूँ